यह एक रेलवे स्टेशन लग रहा है जहाँ पे एक पानी पीने वाला रखा हुआ है और यहाँ पे कोई लोग नहीं है यह पूरा खाली दिखाई दे रहा है यहाँ पे घर और नीचे है और टाइल्स लगे हुए है जो कि सफेद रंग की है और ब्लू रंग की है कलर की हुई है ।